अपणो एक बहुत ही प्राचीन पुराणों मंदिर है जिकी लोग आस्था पूजा करे है।

ई फोटो के मायने आपाने एक घर दिख रहियो जिको कलर है हरियो और पास में एक मंदिर भी है और आपाणे जीती सीडिया दिख रही है।

जो दिखबा में थोड़ो ठीकठाक लाग रहियो है पर अतरो जाडो चोखो कोनी।

इक मायने फेरा वरो स्विमिंग पूल की जे अठे रिंग लाग रही है तीन चार कलर की रिंग है जका मायने पानी आवे है अठे बहुत ही बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी स्लाइडा भी है जका मायनु पानी गिरे है।

बीकॉम करे च जकी भी है सबकी अठे किताबा मिलजासी जो रीट की तैयारी करे बांकी भी है जो रीट की तैयारी करे जो अठे आओ अठे एक आदमी खड़ो है जो धोली धोली टी शर्ट पेर मेल्यो है।

या एक दुकान जो अप जिसमे अपने स्कूल के बैग्स वगेराह मिले है और पेन भी मिले है।

इ दुकान में आपाने सारी चीजा जिया कॉस्टमेटिंग सामान मिल जासी जीया आपा फेस वॉश लगावा जो फेस पाउडर सारी चीजा लडकिया जे भी लगावे नी जो सारी मिल जाय।